सामने एक बहोत बड़े नदी को दिखाया गया है। नदी के ऊपर एक--

रोड बना हुआ ओवर ब्रिज जैसे इधर पौधे भी लगे हुए हैं।

और पीछे ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए हैं पे ब बड़े बड़े पेड़ भी है।

यहां पे छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा जिसमें की बहोत सारे लोग--

ये साड़ी का दुकान है यहां पे बहोत सारी साड़ियां है जो की बहुत अच्छा लगा है।

यहा पे दुर्गा माता का पंडाल बहोत ही बड़ा बनाया गया है।

व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है उधर सोफा दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जमीने वाइट कलर की है।

यहां पे एक व्यक्ती लेक्चर दे रहा है।

और इधर एक लड़की खड़ी है जिसने की मास्क लगाया हुआ है और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए।

ये एक कपड़े का दुकान है जिसमें की बहोत सारी कुर्ते दिखाई दे रहे हैं। वह भी बहोत अच्छे अच्छे कलर के।

यहां सभी योगा की क्लासें कर रहे हैं इधर दीवाल में मिनर लगे--

ये एक खाली हॉल है जिसमें की स्कूटी साइकिल दो सेयर रखे हुए हैं और एक स्कूटी रखी हुई है।

ये वर्ल्ड स्टाफ हाउस है जिसमें की दो गुब्बारे टंगे हुए--

यहां पे बहोत सारे लोग गरबा कर रहे हैं गरबे की जगह को बहोत ही अच्छी तरीके से सजाया गया--

ये एक नदी है जिसमें की नदी का पानी ब्राउन कलर का और बहुत बड़े बड़े--

पत्थर लगे हुए पेड़ पौधे भी घने घने हैं और जो कि एकदम हरे भरे अच्छा लग रहा--

ये एक बिट्स एंड डांस एकेडमी है जिसमें की एक लोगों भी लगा हुआ--

और यहां पे सामने दो लोग बैठे हुए हैं चेयर पे चेयर रेड कलर की है और एक व्यक्ति शायद गार्ड है।

पार्किंग भी है जिसमें की बहोत सारे बाइक पर लगे हुए और कुछ लोग बाइक पर बैठे भी हैं।